जामा मस्जिद ऐसा बनी हुई है ऊपर एक ज्ञान दरवाजा टाइप कुछ बना हुआ है।

पीछे बड़े बड़े घर भी बने हुए हैं यहां पर पौधों के पास में दो चार आदमी बैठे हैं जो की --

और इसके सामने दो टीचर खड़े हैं।

ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है बीच में बहोत बड़े बड़े लोहे के--

खंभे लगे हुए हैं और बीच में ब्लैक कलर का कुछ रखा हुआ है।

बर्लोइ के बहोत बड़े बड़े जंगले लगे हुए हैं ऊपर ब्लैक कलर के कुछ दिखाई दे रहे हैं और इधर--

के अंदर जाने के लिए बाहर सीढ़ियां बनी हुई है लोहे के जंगले लगे हुए है डस्टबिन बने हुए है।

और इधर एक दरवाजा लगे हुए अल्युमिनियम कांच का सामने दीवार के पास सोफे पड़े हैं और कुर्सियां पड़ी है उसके --

और ये पानी इकट्ठा हो रखा है जहां पर कुछ बड़े-बड़े पत्थर भी हैं छोटे-छोटे पत्थर भी हैं कुछ झाड़ियां हैं वो सूखी हुई हैं और कुछ झ --

यहां पर कुछ मूर्तियां लगी हुई है मूर्तियों के गलों में फूलों की मालाएं डाली हुई है।

और बीच में ग्राउंड के अंदर ये कुर्सियां पड़ी है रेड कलर की कुछ आदमी खड़े हैं आदमियों के पीछे कुछ --